ग्रीन कलर का कारपेट बीछा हुआ है कुछ सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है जो कि अंदर कांच के अंदर बंद है बहुत सुंदर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि एक बुक का स्टॉल है यहां पे मिठला बुक सेंटर के नाम से जाना जाता है।

एक ने वाइट पर्पल पिंक टीशर्ट भी पहनी हुई है यहाँ पर पेन वगेरह भी है शटर भी दिए हुआ --

जैसा कि मैं देख पा रहे हूँ ये जिम है जहां पे जिम में काफी वेट के बॉल्स रखे हुए हैंडबल्स रखे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहे हो यहां पे एक लेडी और एक अंकल फोटो खिंचवा रहे हैं पीछे पानी निकल रहा है शायद कहीं पानी फुल हो गया तो उसके गेट जल्दी --

वगैरह का गेट खोल दिया जाता है वैसे और साइड में बहोत सारी हरियाली है पीछे अच्छा खासा व्यू है बहोत सारा पानी दिख रहा है।

साइड में एक बंदा भी पकड़ के बैठा पैर को लड़की को इधर उधर देख रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक ज्वेलरी की शॉप है शायद गोल्ड ज्वेलरी यहां पे मिलती है बहोत सुंदर-सुंदर ज्वेलरी रखे हुए हैं हार रखे हुए हैं इयररिंग्स रखी हुई है।

पौधे लगे हुए है ग्रीन येलो पिंक रेड कलर के --

जेस की मे देख पा रही हु की योग क्लास चल रहे है लोग योग कर रहे हैकाफी अच्छी मात्र मे क्लाससेस में लोग बैठे हुए हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक गाड़ियों का गैरेज है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है अलग-अलग कलर की गाड़ियां खड़ी है ब्लू वाइट रेड पिंक ।

और वहां पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है फ्लावर्स से बहुत सुंदर दिख रहा है एंट्री बहुत प्यारी दी गई हैं लाइटिंग भी बहुत अच्छी सी दी गई है सामने से कुछ लोग आ रहे है।

बहुत ज्यादा दिख गई है यहां पे छोटे-छोटे पैर भी दिए गए हैं येलो कलर की रेलिंग दी गई है बहुत ही सुंदर लगता है यहां पे --

बहुत ही सुंदर सुंदर लकड़ी है आकाश व स्वर्ण लाइन स्वर्ण गुलाब गोल्ड अंबर सारे वो लटका के रखे हुए हैं एक पैकेट पे शिरोली माता का --

यहां पे एक लड़का अपने आप का फोटो खींचवा रहा है बिसेप दिखा के --

साइड में उसके यहां पे जिम के सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं मिशा जीम करके बाइक में घूम रहा है।

शायद यंहा मॉल है ग्रोसरी को यहां से घर का राशन खरीदा सकता है यहां पे टोस वगैरह सब दिया हुआ है।

बहुत ही अच्छा बाग लग रहा है रोड बिल्कुल साफ है।